नीचे जींस पहना जूता पहना--

यहां पे बेचेंस लगाई गई है बैठने के लिए।

तस्वीर में सामने बहुत सारी कारे दिख रही।

की सरस्वती माता का रेड कलर का वेन्यू दिख रहा टेंट लगाएं गया बैलून से सजाया गया।

बगल में प्रसाद के लिए लगाया गया दो टेबल लगाया गया बहुत सारी चेयर रखी गई है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ।

एक साइड डी_जे लगाया गया है बहुत सारा रखा गया हैं डी_जे जिसमें गाना बजता है।

और सारे मतलब आटे पिसाते बहुत बड़ा सा दिख रहा हैं मशीन सामने एक घड़ी टंगा हुआ है।

ने चेयर टेबल लगा है जहां पर लोग खाते हैं।

पर्पल कलर की भी जल रही है रात का समय हो रहा--

तस्वीर में सामने एक बोर्ड टंगा गया है जिस पे लिखा हुआ एम आर मोटर एंड वर्कशॉप ।

येलो कलर से लिखा--

दुकान में डलिये रखे हैं और बॉक्स रखे हैं।

रेड कलर का टेबल है उसपे शिशॉ लगाया हुआ है ग्लोबल रखा गया है ग्लोब--

बगल में सी_सी_टी_वी कैमरा के फोटोज दिखाने वाला एक टी_बी लगा है उसके बगल में एक फोटो लगा है।

इस तस्वीर में सामने लिखा हुआ केदारनाथ धाम।

ये कोई कोई भगवान का द्वारा है यहां पे बहुत सारे डेकोरेट किए गए है।

म्यूजिक भी बज रही है सामने एक लड़का खड़ा जो की कुर्ता पहना कुछ जींस शर्ट पहने--

की जिसके दुकान पे लिखा हुआ है बोर्ड टांगा गया है।

बहुत सारे जूते चप्पल अलग अलग प्रकार के रखे हुए हैं जो की अलग अलग कलर में ग्रीन ब्लू ।

बाहर से सूरज की प्रकाश आ री और छाई दिख री--

और बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं एक बाबा जा रहे हैं।

चल रही अंदर परछाई में दिख रही।

जो कि रेड कलर का टी शर्ट पहना है सामने एक बोर्ड टांगा गया जिसपे लिखा हुआ है हीरोहोंडा बजाज टी_वी_एस मौर्या ऑटो ।

सामने एक बोर्ड दिख रहा है जिसपे लिखा हुआ है अंबिका मैक्स इंडिया पीवीटी एलटीडी ।

सबके हाथ में कुछ ना कुछ है सब काम कर रहा है बहुत सारे सड़क दिख रही है सीमेंट दिख रही है बासे दिख रही है लाइटे जल रही है रात का समय दिख रहा।

पेट्रोल पंप का नया नया उद्घाटन हुआ माला चढ़ाया हुआ।

मेरे को दिखरा कि सामने एक बिल्डिंग दिखरा जिसपे एक शटर भी लगाया हुआ है।

सामने बड़े से पहाड़ दिख रहे जिस पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए--

कोई गार्डन है जो कि बहुत बड़ा है यहां पे बहुत सारे भरे फूल पत्ते दिख रा हैं।

ये जो है गेंदा के फूल हैं बीच बीच में केला के पौधे लगाए गया है और उधर मकई के पत्ते लगाए गए है पौधे।